इस की बराबर में एक व्हाइट कलर की गाड़ी भी खड़ी है और ये बहुत ही अच्छी मंदिर है और इसका जवाब नहीं है।

और इस मंदिर में बहोत सारे लोग आते हैं और दूर दूर से आते हैं और इनका जवाब नहीं है। ये वाइट कलर की है। इसके सामने एक पड़े भी है।

जो है ये एक टॉवर का फोटो है और इस टॉवर के ऊपर चढ़ने की सीढ़िया भी बनाई गई हैं।

ये एक वंडर लैंड पार्क है और इसमें स्वीमींग पूल भी कहा जाता है और ये बोहोत ही खुबसूरत है।

यह अलग-अलग कंपनी की हैं सामने एक बिल्डिंग भी है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी है जिसका जवाब ही नहीं है यह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है।